यह एक पीले रंग का मकान है मकान के अंदर एक रूम है रूम के नीचे कारपेट बिछा हुआ है जो कि तीन लोग--

और पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें इसके बारे में दर्शाया गया है लाल रंग का दीवाल भी आ--

जहां कुछ लोग खड़े हैं अंदर जाने के लिए--

और इसमें एक लाल रंग का डलिया भी है ब्लू रंग का डलिया है कुछ लोग बैठे हैं कुछ खड़े हैं।